हैंगर में लहंगे टांगे हुए है गाऊन भी है पुतले ने पिंक कलर का सूट डाला हुआ है।

ये एक मछलियों की पिक्चर दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सी मिठाइयां दिखाई दे रही है जैसे की बर्फी--